बड़ा ग्राउंड है और एक लंबी बास जैसा रखा हुआ है और एक बाइक है और आसमान का क्ल-रंग उजला है और पेड़-पौधे है उसके बाद घर के ढेर सारे घर हैं दरवाजे है।